यह एक चंपारण मीट हाउस है यहां पर आगे में एक औरत खड़ी है जो ब्लू रंग का कपड़ा पहनी हुई है पीछे बहोत सारा गुटका रखा गया है।

यह एक शोरूम का फोटो है जिस शोरूम में लायरा का--

यह एक दुकान का फोटो है जिस दुकान में चार लाइट लगाये गये चार लाइट जो की--

बाउंड्री किया गया है बाउंड्री ग्रे और ऑरेंज रंग से पेंट किया गया है।

यहां पर एक आदमी है जो की फोटो घिच रहा है पीछे बिल्डिंग है।

कोई ब्लू है कोई येलो है कोई ग्रीन है।

जोकि यह एक रा रेगिस्तान एरिया लग रहा है नीचे हरा भरा पेड़ भी है।

सभी अलग अलग रंग का कपड़ा पहना हुआ है इस फोटो में चार आदमी दिख रहा है।

और इसने एक लेदर का एक बेल्ट पहना हुआ है और पीछे यह शादी का फोटो लग रहा है।

और यह एक शादी का फोटो है जो की पिंक कलर से सजाया गया है।